ये एक किराना दुकान है किराना दुकान में काउंटर दिख रहा है जो ग्रे कलर का उसके उपर रखी है जिनका ढक्कन लाल है।

ये एक ऑफिस का सी ये एक ऑफिस की फोटो है उसमें एक ऊपर सीलिंग फैन लगा है।

बोटले रखी हुई है इधर हैंडवॉश की बोटल रखी है सेवलॉन डिटॉल की बोटले है नीचे का फर्श सफेद कलर का है इसकी दीवारे सफेद कलर की पुती हुई है।

और छत दिख रही है जो टिन के शेड से बनी है सामने एक अ शोपीस वाला गार्डन दिख रहा है जहाँ छोटी-छोटी घासें है एक प्लास्टिक की सेटअप लग रही है दो ठो गमले रखे हुए हैं।

यह एक स्टेशनरी कि दुकान है यहाँ पे बहुत सारे काउंटर हैं एक तरफ काउंटरों में बुके जमी हुई है एक तरफ काउंटरों में कॉपियां जमी हुई है यहाँ पे बहुत सारे बैग भी हैं एक टेबुल है।

ये एक जी.सी.बी. मशीन है जो गड्ढा खोदती हुई दिख रही है इसमें से मलवा निकला जा रहा है और तीन आदमी खड़े है।

ये गार्डन है गार्डन का गेट दिख रहा है जो लोहे का बना हुआ है| इसमें पीले क-अ उसके लोहे के जालिया पीले कलर से पोती है और ऊपर की जालियां लाल कलर की है|

डिब्बों में समान भरा हुआ है तेल की बोटले भी रखी गई है जिसमें राई का तेल और फल्ली का तेल है और ऊपर कार्टून रखे गए है ये--

एक व्यक्ति ने काली टी-शर्ट ब्लैक शॉर्ट्स पहने एक ने हरा शॉर्ट्स पहना है और ग्रे कलर की टी-शर्ट है एक व्यक्ति ब्लैक टी-शर्ट और ग्रे कलर का फुल पैन्ट पहना है इसकी दीवाले नीले कलर --

है ये मीटर वाले कपड़े की दुकान है यहां पर बहुत सारे कपड़े पन्नियों में पेक रखे है कपड़ो का कलर पी लाइट पिंक कलर है और व्हाइट है और डार्क ब्राउन है नीला है।

दरवाजे भी हरी पत्ती और गुलाबी फूल से सजी हुई सामने का पोर्शन गुलाबी फूल से सजा --

ये क्लास रूम है क्लास रूम में बहुत सारे टेबले रखी हुई हैं और बेंच भी है टेबल के ऊपर का जो कवर है वो लकड़ी का है और बेंच के कवर भी लकड़ी का है।